यहाँ पे बहुत ही अच्छी सजावट की गई है पीछे दो दिल बनाए गए हैं जिसमें एक छोटा है और एक बड़ा है।

यहाँ पे एक मस्जिद बना हुआ है जो कि तीन आदमी सामने से देख रहा है।

और यहाँ पे ब्लू कलर का कुछ चेयर पे रखा गया है।

और यहाँ पे एक आदमी उसको चेक कर रहा है जो कि वाइट कलर का सर्ट और नीचे --

और एक व्हाइट कलर का बेड लगा हुआ है जिसका पिलो भी व्हाइट है।

और यहाँ पे दो गेट एक गेट लगा हुआ है जो कि लोहा का है।

और ट्वेंटी फोर कैरेट और यहां पर दो डब्बा रखा हुआ है।

यहाँ पे एक रेस्टोरेंट का फोटो दिखाया जा रहा है जिस पे एक पोस्टर लगा हुआ है।

और एक पतीले में रसगुल्ला रखा गया है जिसका कलर वाइट है और उसमें रस भी है।

जो कि ब्लैक कलर का है और महिला ने साड़ी पहनी हुई है और यहाँ पे पीछे पुलिस का --

ब्लैक सर्ट पहने हुए एक आदमी भी बैठा हुआ है और उसके बगल में एक वाइट सर्ट --

यहाँ पे एक रूम है जिसका कलर ऊपर से ब्लू है और नीचे टाइल्स लगाया गया है।

यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ़ महाराष्ट्र।

यहाँ पे एक व्हाइट कलर का घर है जिस पे एक पोस्टर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है एस_ बी_ आई ।

जो कि वाइट कलर का है और इस पे कुछ-कुछ लिखा गया है और सामने में --

और यहाँ पे एक पलंग है जिस जो जिसका कलर ब्राउन है और जिस पे एक कपड़ा डाला गया हैब अ नीला कलर का।

यहाँ पे किसी चीज़ का फैक्ट्री है जिसमें से धुआँ उठ रहा है दो पोल है जिसमें से धुआं निकल रहा है।

और सामने में एक विंडो भी लगा हुआ है जो कि नीला कलर --

एक पोस्टर पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नीचे में दुकान में तीन दो आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है।

यहाँ पे एक रोड है जो कि वाइट कलर का है और बगल में कई सारे पौधे लगाए गए हैं।

जिसमें रेड कलर का ईंटा से बनाया गया है और बहुत ही--

और एक आदमी खड़ा है जिसके टी शर्ट का कलर रेड है और--

और ऊपर लोहे का घर बनाया गया है और एलवेस्टर रखा गया है उसके ऊपर और एक आदमी --

यहाँ पे एक घर है जिस जिसका गेट को बहुत ही अच्छे से सजाया गया है और उसके ऊपर बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है।

आगे कई सारे कार लगे हुए हैं जिसका कलर वाइट और ब्लैक कलर सब है।